पूतले नजर आ रहें हैं श्री कृष्ण राधा उनको देखने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं एक झाड़ के नीचे तीन पुतले हैं वहां पर चेयर है दान पेटी भी है।

एक लड़की व्हाइट कलर की डिजाइन ड्रॉ कर रही है लड़की ने ब्लू कलर की टीशर्ट पहनी है।

इस फोटो में पानी के अंदर लेडिस लोग खड़े हैं जो की पूजा कर रहे हैं उनके पीछे पूजा की थाली नजर आ रही है फल नजर आ रहे हे।

किसी के मंदिर के ऊपर लाल लाल कलर के कपड़े हैं। कोई औरत लोग नीचे बैठी हुई है।

इस इमेज में एक सैलून दिखाई दे रहा है जो की बैनर पर इ ऑन एच.पी पार्लर दिखाइए हुआ है।